बहुत अच्छा जगह है यहीं पे --

घर भी है दुकान भी है बहुत सारा चीज़ हैं उसके बाद आदमी यहाँ सब्जी वैगेरह कपड़े जूते सब कुछ मेले में खरीदने --

यह आदमी कलम बेचता है और उसके बाद एक कॉपी वगैरे चीज बेचते हैं और उसके बाद कोलगेट ब्रश कॉपी कलम बहुत सारे चीज है उनके दुकान मे हर --

यह ऑफिस है। यहाँ पे आदमी सब अपना फोरम उरम भर सकते हैं।

यहाँ पे एक ठो आदमी के पैर मे चोट लग गया है और फुटबॉल खेलते-खेलते उसके बाद दूसरा डॉक्टर या आकर उनका पैर में पैर पकड़कर रहते है झंडा सब गड़ा हुआ है ।